जिसका दरवाजा खुला हुआ है और यहाँ दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

और कमरे की दीवारें भी रंगीन कलर से रंगी हुई हैं।

दिए हुए चित्र में एक एयर पोर्ट दिखाई दे रहा है।

कुर्सी और मेज लगी हुई है कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं।

दिए हुए चित्र में एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिए हुए चित्र में एक बास्केट बॉल कोड दिखाई दे रहा है।

इसके बगल बगल काफी सारे बड़े बड़े --

दिए हुए चित्र में एक उद्द्यान दिखाई दे रहा है।

यहाँ काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

दिए हुए चित्र में सामने एक बैंक दिखाई दे रहा है।

और सड़क के किनारे काफी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं।

दिए हुए चित्र में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

जहा एक सफ़ेद कलर का खम्बा लगा हुआ दिखाई देरा हे जिसमे --

जिस मैदान के किनारे किनारे बहोत सारे बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उद्द्यान के किनारे किनारे काफी बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए हैं।

दिए हुए चित्र में एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा--

तथा ऊपर की ओर एक नीले कलर की लाईट लगी--

और पेट्रोल पम्प पे काफी सारी लाइटें भी लगी--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

उद्द्यान में काफी सारे झूले भी लगे हुए दिखाई दे--

दिए हुए चित्र में एक उद्द्यान दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे--

दिए हुए तस्वीर में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसका रं--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

दिए हुए चित्र में एक क्लास रूम दिखाई दे रहा--

और एक औरत भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

तथा आसमान में कुछ बादल भी दिख रहे हैं।

यहाँ किनारे पे एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही--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

एक गाड़ी की दिग्गी भी खुली हुई दिखाई दे रही--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

दिए हुए चित्र में एक लाल कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

तथा पीछे दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं उन्होंने गुलाबी रंग का शर्ट पहना हुआ है।

दिए हुए चित्र में एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसका फर्श रंग बिरंगा लग रहा--

जहां पर नेशनल पॉल्यूशन चेक सेंटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दिए हुए चित्र में काफी सारी दुकानें दिखाई दे र--

तथा पहाड़ के बीच से एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा।

उसमें एक लाल कलर की बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में काफी सारी खिड़कियाँ भी बनी हुई दिखाई दे रही--

दिए हुए चित्र में एक हॉल दिखाई दे रहा है।

यहाँ काफी तरह तरह के झूले लगे हुए दिखाई दे रहे--

दिए हुए चित्र में एक उद्यान दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में काफी सारी खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही--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

और बिल्डिंग के नीचे कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

दिए हुए चित्र में एक झरना दिखाई दे रहा है।

इसके किनारे किनारे काफी बड़े बड़े पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे--

इसमें काफी सारी मेज और कुर्सियाँ रखी हुई--

तथा यहाँ पीले कलर की दो बसें भी दिखाई दे रही हैं।

कोई खाने की वस्तु रखी हुई दिखाई दे रही है।

जहाँ काफी सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है एवं कुछ लोग खडे भी दिखाई दे रहे है।

जहाँ पे पीले कलर के कुर्सी रखे हुए हैं।

तथा एक सफ़ेद कलर की कार भी दिखाई दे रही है।

चित्र में एक हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ काफी सारे मे--

यहा पर काफी सारी विभिन प्रकार की रंग भिरंगी साइकिले भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

छोटी छोटी बच्चों की साइकिलें भी रखी दिखाई दे रही हैं।

दिए हुए चित्र में एक गेट दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर नीले कलर का एक पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं।

दिये वोही चित्र में एक उद्यान दिखाई दे रहा है है जिसके किनार किनारे काफी सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पोधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

दिए गये चित्र में एक जिन दिखाई दे रहा हे जा काफी सारी --

एक्सरसाइज करने की मशीनें भी लगी हुई हैं।

तथा यहाँ दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिए हुए चित्र में एक उद्द्यान दिखाई दे रहा--